जो कि और भी अच्छी लग रही है और चारों तरफा पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जोकि और भी अच्छे लग रहे है और यहां पर बीच मे सफेद कलर है जो बहोत अच्छा लग--

और इसमें बहोत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं और चारों तरफा काम ही काम चल रहा है यहां पर एक कुर्सी अभी रखी हुई है जो भी देखना है बहोत ही अच्छी लग रही है।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

और यहां पर लकडी की कुछ बिल्डिंगे बना रखी हुई है जो देखने में बहोत ही अच्छी लग रही है और कुछ व्यक्ति चल रहे हैं और कुछ खड़े हुए हैं जो देखने में और भी अच्छे लग रहे हैं।

और उसकी चारों तरफ में पेड़-पौधे लगे हुए जो की बहुत ही अच्छा है। बराबर मौसम हो रहा है और कुछ व्यक्ति खड़े हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

यह एक मैदान है जहां पर एक बुलेट खड़ी हुई है बुलेट बहुत अच्छी गाड़ी है माइ ड्रीम है। --

और ये काला कलर की और सफेद कलर की बकरी है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

यह एक मैदान है उसके पीछे कुछ अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है चारों तरफ मुंह में जो देखते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वह ब्लैक कलर की रेलिंग भी लगी हुई है।

यह एक साइकल वर्क्स शॉप है यहां पर साइकल ही साइकल दिखाई दे रही है यहां पर दो तीन व्यक्ति साइकल की टेस्ट कर रहे हैं।

यह एक कार शोरूम है और यहाँ पर आई ट्वेंटी है और क्रेटा भी लग रही है ये ।

बाहर के साइड से आ रहा है जिसने इस गले पे शीशा लगा हुआ है इसके पीछे एक--

सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर बहुत अच्छी पूजा होती है यहाँ पर सुबह सुबह पूजा करने के लिए वो लेते आते हैं।

यह एक पहाड़ है जिस पर बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए हैं और चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली भी हुई हुई है।

यह एक होटल है इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर डाइटिंग टेबल भी है चारों तरफ--

फुल डी_जे का सामान भी रखा हुआ है यहां पर कुछ जे बड्डे पार्टी या शादी का फंक्शन हो रहा है कोई यहां पर बराबर में--

इसकी डेकोरेशन बहोत अच्छी हुई है दो दो कैमरे भी लगे हुए हैं पर्दे भी लगे हुए ऑल आउट भी मिलता है किड ना नाइ --

चोट इसकी गर्दन पे लगा हुआ बैठा हुआ है ये बहोत ही शांति से बैठे हुए है और किसी चीज को देख रहे है।

पानी पीने की व्यवस्था भी की हुई है और कोई यहां पर शाम का प्रोग्राम लग रहा है।

यह एक होटल है इसको चारों तरफ से गुब्बारों से कुछ डेकोरेशन की हुई है और दो ऐ_सी भी लगी हुई है जो देखना बहुत ही अच्छी लग रही है।

चारों तरफा पेड़ पौधे लगे हुए जो देखने में और भी अच्छे लग रहे हैं और यहां पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो देर रात का यहां पर प्रोग्राम हो सकता जो दे --